जिसको दो बंदे चला रहे है एक आगू आगे से चला रहा है और पीछे वाला जो इंसान है वो चप्पू से चला रहा हैं।

और इसके नीचे लिखा है ओनली वेज ओनली वेज मतलब यहां पे सिर्फ वेजीटेरियन लोगों के लिए खाना मिलता है वेजीटेरियन खाना ही बनता है।

लोग यहां पर बैठकर और शायद वाइन का आनंद लेते हैं और स्विमिंग पूल में अपना नहाना कर कर लेते हैं और सन बाथ भी लेते हैं।

ये स्कूल की स्टेज का सीन है पीछे जो है शिव जी कि मूर्ति लगी हु अ सिनरी लगी हुई है।

ये एक हॉस्पिटल के केबिन का सीन है जहां पे एक बेड लगा हुआ है।

और दो पिलो लगे हुए हैं दो छोटे पिलो भी लगे हुए हैं एक ब्लैंकेट लगा हुआ है एक ए_सी लगा हुआ है जोकि एक रूम को पुरा करता है।

जो राजू नर्सरी के नाम से है इसमें बाहर बहोत सुंदर सुंदर गमले रखे हुए हैं।

मीनिंग ये ऐड कर रहे हैं कि जो हेलमेट है ये साइकलिंग हेलमेट है।

और ये इधर चिप्स वगेरा के पैकेट टांगे हुए है जो हमारे को बच्चे देख के बहोत आकर्षित होते हैं।

इसमें की एक टेबल रखी है और साथ एक बॉस की चेयर रखी है।

पिक्चर में हमारे को एक क्लास रूम दिखाई दे रहा है जहां पे टीचर पढ़ा रहे--

ये हमारे को जिम का दृश्य दिखाई दे रहा है जहां पे एक बंदा खड़ा है और वो एक्सरसाइज कर रहा है।

और ये साइड में और भी बहोत सारी एक्सरसाइज मशीने पड़ी हैं जहां पे ये एक्सरसाइज कर रहा--